इस चित्र में मुझे बड़ा सा पहाड़ नजर आ रहा हैं जिसमे एक सीढ़ी भी बनाई हुई है।

और इस पत्थर को काट के इक सिरी बनाया हुआ है।

और मुझे टेबल के ऊपर तरह तरह की चीजे हैं जो कॉफी बनाने में मदद लगता है।

मुझे लगता है कि इस पत्ते का नाम तुलसी है।

और मुझे पौधे भी नजर आ रहे है जो--

उस का कलर भी बहुत सुंदर है जैसे कि ये लाल पीला हरा।

इस चित्र में मुझे एक देवी का चेहरा नजर आ रहा है।

ऐ जिसका कलर लाल है मुझे लगता है कि ये कंपनी का नाम होंडा है।

इस चित्र में मुझे एक फुटबॉल ग्राउंड नजर आ रहा है।

उस क्लासरूम में मुझे तरह तरह की चीजे दिखाई दे रही है।

मूर्ति के नीचे मुझे बहुत सारा इंसान भी नजर आ रहा है।

ई झूला तीन तरह का झूला जिसका रंग लाल पीला है।

मुझे एक बहुत सुंदर सा दुकान दिखाई दे रहा है।

मुझे इस चित्र में एक गैरेज नजर आ रहा है और मुझे दो व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

और दो व्यक्ति गाड़ी को धुला रहा है और मुझे एक बहुत बड़ा सा घर भी नजर आ रहा है।

मुझे एक सुंदर सा चित्र नजर आ रहा है जिसमें दूल्हा दुल्हन अपने तरह तरह के पोज दे रहे हैं।